और अन्य चीजें यहां पर मौजूद है जैसे कि आप सकते है यहां पे कितने लोग क्रिकेट खेल रहे है।

यह किसी एम_आर_एफ टायर की दुकान है जहां पर एम_आर_एफ का टायर मिलता है और इसके बगल में--

कई प्रकार की दुकान ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर गाड़ी अन्य चीजों के लिए यहां वहां मौजूद है ग्रीस तेल--

बहोत सारी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं और यहां पर प्रतिदिन सैंकड़ो लोग आते हैं यहां अपने आप को--

देखिए आप देख सकते है यहां पर कितने सारे लोग घर कितनी हरियाली है?

जहां पर ढेर सारे पेड़ पौधे सोलर लाइट और अन्य चीजे यहां पर मौजूद है जैसा की आप देख सकते हैं।

ये दुर्गा माता का पूजा करते हैं वह मंदिर बहुत पुराने समय की है।

है यहां पर मिस्त्री आये है और उसके अच्छे तरीके से सही कर रहे है जिससे वो सही होकर फिर से सही तरीके से वर्क कर सके--

और यहां का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है जैसे कि आप देख सकते है यहां पर कितने लोग आए हुए हैं और यहां पर अपने आनंद का मजा ले रहे हैं।

कितने अच्छे अच्छे फूल पौधे और अन्य चीजे यहां पर मौजूद है।

जैसे कि यहां का नजारा कितना खूबसूरत और प्यारा और अच्छा लग रहा है जैसा आप इमेज में देख--

यहां एक पशुओं की दुकान है यहां पर पशु डॉक्टर रहते हैं पशुओं की कैल्शियम विटामिन पशुआहार कुत्तों की दवाई और अन्य चीजे यहां पर मिलती है।

लोग कमरा लेकर रहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये घूमने टहलने के लिए आते हैं और जहां पे पीछे कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं।